अच्छे से पढ़ाया जाता है।

और यहाँ बहोत दूर-दूर से लोग मछ्ली पकड़ने के लिए भी आते हैं और उस मछ्ली को बाजार में बेच के अच्छे दामो में --

और यह एक अच्छा सा चाय है।

फ्रेंड्स नाम का इन्हें एक अच्छा सा घर का नाम दिया गया है । यह एक कपड़ा का दूकान है ।

और बहुत ही न्यू मॉडल्स का मिलता है।

यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग इसे देखने और घूमने के लिए आते --